जहाँ लोग जाते हैं। मछली खरीदते हैं। लेकिन इस इलाके में बड़ा ही बदबू भी आता है जो सहन से बाहर हो --

वो सामान की दुकान दिख रही है और यहाँ हमे टॉफी से लेकर नमकीन बिस्कुट अ मिर्च मसाले --

यह आदमी मछली बेच रहा है। तरह-तरह की मछलियों को ये लिया हुआ है जो छोटे-छोटे छोटी मछलियां भी हैं इसके पास बड़ी मछलियां भी है।

वह किसी फंक्शन दिख रहा है यहां कोई कार्यक्रम है जिसके बाद कार्यक्रम सफल हुआ।